यहां पर यह विलुप्त कगार पे होंगे इसीलिए इनको चिड़ियाघर में संग्रहित करके रखा गया--

यहां पर एक ऑटो गैरेज और सर्विस सेंटर दिखाई दे रहा है।

क्योंकि यहां पर बहोत ही ज्यादा डी_पी लगी हुई है और यह डी_पी --

और जहां तक यह रेस्टोरेंनट है ये जंगल के बिल्कुल नजदीक है।

यहां पर मुझे एक बहुत ही अच्छा जैन धर्म का मंदिर दिखाई दे रहा है।

और यह गार्डन इससे काफी सुंदर और काफी आकर्षित लग रहा है।